पिक्चर में बड़ा सा एक बिल्डिंग है।

और पीछे में बड़ा सा एक बिल्डिंग भी है।

और छोटा सा एक दुकान है।

और दो ठो चेयर रखा हुआ है।

पर्दा भी टंगा के है और तीन ठो चेयर रखा है।

ये पिक्चर में टीना से बना के एक बड़ा सा घर है।

और पिक्चर में टीना से बनाके एक घर भी है।

और रेड कलर का एक ठो चेयर है।

पान छः चेयर रखा है।

और साइट पे लंबा सा एक घर है।

और बहुत सारा कुर्सी रखा है।